क्रिकेट खेला जा रहा है।

एक सम्मलेन हैं। चौदह फरवरी है ये मंथ बार-बार और आयोजक है इसमें और इसमें दो महिलाये नृत्य कर रही हैं।

विभाग की एक बिल्डिंग हैं।

और ये है मॉल और ये यहाँ पे खड़ी है।

गैरेज है जहाँ पर मकैनिक गाड़ियां संभालते हैं और कुछ टूटी फुटी गाड़ियों की मरम्मत की जाती है।

इंस्टिट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन कॉलेज है।

स्पोर्ट्स सेंटर है।

और दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इनके पीछे एक लड़का खड़ा जिसके सर पर पगड़ी है।

यह एक बंगवा टाइप का बना हुआ हाउस है।

जिसकी शाखा बदायूँ में है। यूको बैंक का पेटीएम ए.टी.एम. भी बदायूँ में और वही पर यूको बैंक का ए.टी.एम. भी है।